और यहां से आसमान में देख रहा है।

पीले गुलाबी सफेद रंग की है।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

ये गणेश जी की तस्वीर दिख रही है और यहां पे किताब हि किताब रखी हुई है।

और ये एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पे रे आर_आई लिखा हुआ हैं और यहां पे ये कुर्सी रखी हुई हैं।

यहां पे ये गेट भी लगे हुए हैं।

यहां पे हाम देख सकते हो--

यहां पे ये पैड़ी भींग रही है।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

और यहां पे ये पाइप देख रहे हैं ये नीले रंग के ला--

और यहां पे लाइट लगी हुई है और यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

और यहां पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।